यह एक विद्या मंदिर है यहाँ का साइन बोर्ड एस के प्लस टू विद्या मंदिर जकाई जमुई का है यह विद्यालय बहुत ही बड़े है यहाँ बहुत सारा बच्चा साइकिल से पढ़ाई कर --

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है । ये बिल्डिंग चारों ओर से बनाया गया है । वह देखने में बहुत अच्छा लगता है । बिल्डिंग के बीच एक बड़ा गेट लगा गया है जो गेट बहुत ही सुंदर --